इनमें शिव भगवान काली माता और रामदेव जी का फोटो है कुछ लोग है जो की पूजा वगैरा कर रहे हैं पास में एक पंडित भी दिखाई दे रहा है फोटो काफी अच्छा और --

इस फोटो में कुछ कंप्यूटर दिखाई दे रहा है जो एक आगे पीछे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं पीछे कुछ ओलर भी लगाया गया है।

इसमें कुछ लोग ग्राउंड की ओर से अ च छज्जे के नीचे भागते फिरते दिखाई दे रहे हैं।

और जोकि भैंस बड़ी और बछड़ा छोटा है नीचे--

बढ़िया और अच्छा लग रहा है एक व्यक्ति है जो बाइसेप्स की जिम लगा रहा है दूसरा है जोकि शीशे की ओर देख रहा है जोकि यह येलो टी-शर्ट वाला --

अ लाल कलर में गेट हैं और बाहर की ओर पेढ़िया बनाई गई है।

गुरु सिंह साहब करके नाम है।

साइज करके दिखा रहे हैं दोनों ने काले कलर के टी शर्ट पहने हैं लड़की के हाथ में छोटा कड़ा भी है और लाल कलर की --

फोटो काफी अच्छा और शानदार दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में साड़ियों की दुकान दिखाई दे रही है जिस पर एक पुतले पर साड़ी पहनाई गई है बीच में कुछ मूर्ति दिखाई दे रही है जो --